सामने की तरफ मुझे एक गेराज खड़ा नजर आ रहा हैं गेराज की तरफ मुझे एक कार नजर आ रही है कार खुली हुई नजर आ रही है थोड़ी- सी सामने से और आइट- साइड मुझे उसके पार्ट्स नजर आ रहे हैं।

सामने कि तरफ एक माता कि मूर्ति नज़र आ रही है जिन्होंने हार पहना हुआ नज़र आ रहा है ये लोग हार पहनाने जा रहे है निचे की तरफ एक आंटी है जो कि उनके पैर छू के आशीर्वाद लेती नज़र आ रही है सामने की तरफ--

तरफ दो बच्चे नजर आ रहे हैं जो की एक लोहे के बने हुए जांगले के ऊपर खड़े हुए नजर आ रहे हैं एक लड़का सबसे ऊपर की तरफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

कुछ सैकल वाले ठेले नज़र आ रहे हैं और साइड साइड कुछ लोग भी नज़र आ रहे है इसके पीछे के तरफ कुछ घर भी नज़र आ रहे है उप्पर की तरफ कुछ साइड साइड की तरफ मुझे कुछ बड़े-बड़े पेड़ नज़र आ रहे है जिधर मुझे इलेक्ट्रि के कुछ व्हेयर नज़र आ रहे है मौसम भी काफी अच्छा नजारा है कुछ सफेद-सफेद बदल भी नज़र आ रहे है मुझे--

इस जगह पे कुछ मिट्टी पड़ी हुई नज़र आ रही है कुछ छोटी-छोटी सी घाँसे नज़र आ रही है इस घर के ऊपर की तरफ का मौसम भी काफी अच्छा नजारा आ रहा है साफ मौसम नज़र आ रहा है और ऊपर की तरफ कुछ बादल नज़र आ रहे है सफेद सफेद रंग की कुछ बादल नजर आ--